श्रीषों को पकड़कर दिखाई दे रहा है और इसके गले में सांप दिखाई दे रहा है और साथ में यहां पर एक मंदिर भी है।

एक रूम बना है और वो संतरा रंग में पोटाया हुआ है।

यहाँ बिल्डिंग है और इसमें लिखा है।

अच्छा दिखाई दे रहा है और साथ में एक दो तल्ला --

यहाँ पर आदित्य फॅमिली रेस्टोरेंट दिखाया हुआ है और यहाँ पर यहाँ पर कही व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है और एक बिल्डिंग तो एक छत का बना हुआ है।

इसमें लिखा है श्री हिंगराज बुक डिपो और यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेशनरी कॉपी --

यहाँ रोड है जिसमें टाइल्स लगा है और साथ में बगीचा भी दिखाई दे रहा है और साथ में एक बिल्डिंग भी और एक व्यक्ति जा रहा है ऐसा --

लग रहा है की यहाँ पर डांस हो रहा है और यहाँ पर अनेक प्रकार के लाइट भी लगे हुए है जो बहुत खुबसूरत दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लाल रंग का लाइट ज्यादा दिखाई दे रहा है।